इस तस्वीर में एक व्यक्ति एक टैक्सी के पास में खड़ा है और हैंडल पकड़े हुए खड़ा है।

कुछ बॉक्सेस रखे हैं जिन पर लिखा है--

इस तस्वीर में एक रास्ता दिख रहा है जो नीचे की ओर जा रहा है।

इस तस्वीर में बहोत से गाड़ियां और मोटरसाइकिलें दिख रही है और कुछ व्यक्ति दिख रहे हैं जो की --

स्टील कि रेलिंग लगी हुई हैं और सामने वॉटर कि बौछार होती दिख रही हैं कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

यह एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिनके नीचे दो बाइक खड़ी है और एक-एक खिड़की है जिसका रंग काला है ऊपर एक ए_सी भी लगी हुई है।

का एक रास्ता बना है और ए नीचे सेंटर भी लगा है कोई--

इस तस्वीर में एक व्यक्ति खड़ा है जो कि इस दृश्य को देख रहा है पास में बहुत सारी बाइक है और एक --

यह तस्वीर किसी पारक या जंगल के एंट्रेंस को दिखा रही है।

कार्य से एक घर के पास खड़ा हुआ है।

बीकानेर के जगह को दिखाया गया है और एक स्टील की खिड़की है उसके बाहर एक बाइक खड़ी दिखाई दे रही है।

एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर राम कृष्ण आश्रम भी लिखा हुआ है।